और स्विच बॉक्स भी है।

रूम का अंदर में तीन इंसान दिखाई दे रहा है।

औरत घर का आगे में--

ग्रीन कलर का कारपेट है।

और मछली के नीचे में एक फ्लोर है।

और रूम का अंदर में बहुत सारा सामान है।

और बहुत सारा येल्लो कलर का प्लास्टिक भी है।

और उसका अंदर में तीन स्टैचू है।

और दो फैन भी दिखाई दे रहा है।

और कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

अ एक स्विच बॉक्स है।

और एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

और बिल्डिंग का कलर जो येलो कलर का है।

और दुकान में बहुत सारा स्टार है।

रूम का अंदर में दो इंसान दिखाई दे रहा है।

और एक पानी बोटल है।

यहां पे एक रूम है।